एक मूर्ति कुछ बड़ी है दो मूर्ति बहोत छोटी है यहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे पत्तियां भी दिखाई दे रही है पीछे जाली भी लगी।

और पीछे बाउंड्री बनी हुई है हरे रंग के खंबे के लगे हुऐ बहोत से पेड़ भी लगे हुऐ है हरे-हरे यहाँ पर पता नही क्या हो रहा है

बेडरूम लग रहा है और उसपे पुता हुआ है पिछे दो पेंटिंग लगी हुई है।